बोले ना ऐ दिख रहा है घर दिख रहा है और खनियार दिख रहा है और इधर पेड़-पौधा और इधर क्या है ? पानी हैं ।

ये दिख रहा है पखल का चट्टान है लाल है गुलाब रंग के दिख रहा है यहाँ सफ़ेद है पेड़-पौधा है इधर पहाड़ इन नदी नदी है की क्या है ? और इधर दिख रहा है जोकि पीला रंग के --

यहाँ शादी वगेरा का लगा हुआ है मने टेंट कुर्सी सफ़ेद है एने पौधा है खजूर का पेड़ है हरा रंग का घास दिख रहा है अब बड़ा पट्टा रंग के दिख रहा इसका मने टेंट एंगल --

ऐ क्या है ? चबूतरा क्या ?--

ये देखिये यहाँ मेला-उला लगा हुआ है यहाँ दीप जला रहे है बहुत सारा यहाँ लइका बच्चा सर सियान दिख रहे है यहाँ एक से एक कोई मूर्ति लगा हुआ है दिख रहा है जोकि मेला में इधर घर है यहाँ आदमी सब भी पूरा दिख रहा है एक नंबर से --

ये देखिये यहाँ मूर्ति दिख रहा है दुर्गा माई का अअअए यहाँ पूजा कर रहे है लईका लोग एक नंबर का छोटा - छोटा मूर्ति दिख रहे है ऊपर में दुर्गा माई हैं ।

बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है उसमें होटल है एक से एक मने वैरायटी ये वैरायटी के मिठाई दिख रहा है और कलरे-कलर का डिज़ाइन दिख र हा है एक नंबर में है जहाँ तक दिख रहा है वहाँ एकदम सुन्दर दिख रहा है होटल देखिये अच्छा कलर में हैं ।

चबूतरा टाइप दिख रहा है यहाँ छजा है रॉड लगा हुआ है गाड़ी खड़ा है एकठो बड़ा अ-आगे बिल्डिंग दिख रहा है पेड़-पौधा हरा रंग के दिख रहा है इधर मने कला जो --

ये देखिये यहाँ दिख रहा है बड़ा-सा दो ठो खजूर दिख रहा है बहुत सो पत्ता खजूर और बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है यहाँ --

अ पौधा का जगह दिख रहा है ये बगवान लगा हुआ है बगीचा जैसे गाड़ी खड़ा है एक नंबर में यहाँ घर का बाउंड्री बनाये हुए है अच्छा दिख रहा हैं ।

अंदर है दो ठो है बड़ा रिंग और दो ठो छोटा है उसमें दो ठो लाल है और एक ठो पीला है एकठो हरा है और बहुत बड़ा है यहाँ दिख रहा है मशीनरी चीज लगा हुआ है पानी के अंदर --

ये फूल एक नंबर में दिख रहा है सो पता अच्छा मने रंग दिख रहा है एक दम --